और यहाँ टो टो के पास में एक लड़का है।

पीछे की तरफ यहाँ पे कर्टेन भी लगाई गई है बहोत ही सुन्दर से सजावट की गई है।

नदी है और नदी का पानी बहोत ही सुन्दर नीले रंग का है इस में एक नांव सफ़ेद रंग की लगी हुए है जिस में--

यह एक मंदिर है जो की सफ़ेद रंग का गुलाबी और नीले रंग का हैं और यहाँ पे --

लिखा गया है मंदिर के सीधे सामने में एक सफ़ेद रंग की छोटी सी तुलसी की मंदिर बनाई गई है।

टीशर्ट पहने हुए एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है।

यहाँ पे बहोत सारे बच्चे बैठे हुए है और --

नदी के किनारे में उस पार हरे - हरे घास बने हुए है और कुछ पेड़े भी लगाए गए है बहुत सारे घर भी नजर आ रहे है।